यह फोटो एक स्नैक बार की है जिस के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुए है और मास्क लगाए हुए है और एक व्यक्ति बैठा हुए है जो फ़ोन पे बात कर रहा है।

आए फोटो एक व्यायामशाला की है जहां दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और दो औरते खड़ी हुई हैं और इसके साइड में पौधे लगे हुए हैं।

कुछ पौधे भी हैं और बहुत अच्छी हरियाली --